हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ काम चल रहा है काम क्रेन की मदद से किया जा रहा है ।

यहां सामने हम देख रहे हैं तोसीफ मोटक मोटर करके होर्डिंग एक दिख रहा है।

यहाँ पर ग्राउंड पे कुछ अ लड़के बच्चे अ खेल खेल रहे हैं पीछे ज घना जंग --

टी-शर्ट है वो कलरफुल है और अ सब पढ़ाई कर रहे हैं।

यहाँ पर लगता है कुछ ऑफिशियल वर्क टाइप से होता है एक दो कैबिंस बने हुए हैं--

देखिए यहां पर कुछ कार्यालय संबंधित कुछ काम होता है।

और इस हॉल में काफी सारी खिड़कियाँ भी हैं।

कि यहाँ पर मानो कुछ अ लोग एक जगह इकट्ठे होके देख रहे हैं कोई सामान वमान की खरीद बिक्री।

यहाँ पर लगता है कार रिपेयर का काम होता है एक दो आदमी कार के पास बैठे हुए हैं औ उसे लगता है रिपेयर कर रहे हैं।

अ कार व्हाइट कलर में भी है कुछ ग्रीन कलर में भी है कार के आगे की स्तिथि लग रहा खराब है उसे वो लोग लग रहा है ठीक कर रहे हैं।

जिम का जो उम सामान है वो काफी मात्रा में है यहाँ पर यहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ है।

यहाँ पर कार की मरम्मत की जा रही है लेकिन किसी की मौजूदगी नहीं है कार क जो है कार का बोनट --

ये एक सब्जी दुकान की पिक है सब्जी अंदर काफी मात्रा में है साथ ही साथ फल भी कुछ लग रहे हैं दिख रहे हैं।

पोस्टर की तरफ देख रहे हैं और वहाँ पर लगता है कोई चीज की मीटिंग वीटिंग अरेंज है।

ये हम सामने देख पा रहे हैं सीनियर स्कूल गोपालगंज करके कुछ है।

और दुकान में कुछ पोशाक रेडीमेड टाइप से कुछ लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर कुछ कपड़े का सामान मिलता है।

लाइटिंग भी खूब बढ़िया है कुछ क्रैकर्स क की भी यहाँ क्रैकिंग हो रही है और कु कुछ लोग प प्रोग्राम की ओर देख रहे हैं।

में जो प्लेग्राउंड है यहाँ पर कोई चीज का कोर्ट भी बना हुआ है ऐ खेलने के लिए और--

ये केनरा बैंक का ए_टी_एम है सामने और ए_टी_एम के अंदर एक आदम एक--

छोटी-छोटी शीशियाँ में है एक चेयर भी है जो कि ब्लैक कलर में है और एक--